एरोज लखा हुआ है और ये टीना है ऊपर में --

ये आपका एक दुकान है और दुकान का कलर है ग्रीन कलर उस--

एक आदमी पान दुकान वाला खड़ा हुआ है और एक चाय पी रहे हैं दो आदमी बैठा हुआ है।

इनका कलर है पिंक कलर का और गेट हैं और एने लाइट का पोस लगाया हुआ है।

दुकान दो तीन दुकान है और इसका इसका सामने में एक औरत खड़ा हुआ है और कुछ बस्ता वोस्ता रखा हुआ है।

और खिड़की में ये ग्रीन कलर लगाया हुआ है।

छोटा छोटा पॉट पौधा रखा हुआ है।

मे आपका मेट्रस रखा है और छाती भी है।

ए बी कॉम्प्लेक्स और बाहर में कुछ छाता लगा हुआ है।

और चेयर भी दिखाई दे रहा है और उसका बाहर में तीन लड़का है।

और सामने सामने में बहोत सारा गछिया दिखाई दे रहा है।